सी में फाइल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फाइल कैसे खोलें160
फाइल में डेटा कैसे पढें160
फाइल में डेटा कैसे लिखें160
कुछ उदाहरण इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 जीसीसी कंपाइलर वर्जन 461
फाइल के परिचय के साथ शुरू करें
फाइल डेटा का संग्रहण है
यह डेटाबेस प्रोग्राम लेटर या अन्य कुछ हो सकता है
हम एक फाइल बना सकते है और सी का उपयोग करके इसे एक्सेस कर सकते हैं
सी में फाइल हैंडलिंग पर एक उदाहरण देखें
मेरे पास लिखा हुआ प्रोग्राम है
चलिए देखें
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम fileसी है
इस प्रोग्राम में हम एक फाइल बनायेंगे और इसमें डेटा लिखेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यह हमारा मेन फंक्शन हैं
फाइल वेरिएबल को परिभाषित करने के लिए हम फाइल टाइप का उपयोग करते हैं
फाइल वेरिएबल हेडर stdioह के अंदर परिभाषित होता है
fp के लिए फाइल वेरिएबल के लिए प्वाइंटर है
यह फाइल से संबंधित सभी जानकारी संचित करेगा
जैसे इसका नाम स्थिति और वर्तमान जानकारी
अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
अब हम फाइल को खोलने के लिए सिंटैक्स देखेंगे
यहाँ फोपेन फंक्शन स्ट्रीम को खोलता है
फिर यह फाइल को स्ट्रीम के साथ लिंक करता है
फाइलनेम उस फाइल का नाम है जिसे हम खोलना या बनाना चाहते हैं
हम फाइलनेम के साथ पाथ दे सकते है
और हम एक्सटेंसन भी दे सकते है
यहाँ हम फाइल का मोड दे सकते हैं
मोड्स के प्रकार देखें
द्व -फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करता है
र - फाइल को पढ़ने के लिए खोलता है
आ -फाइल के अंत में लिखता है
अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएँ
यहाँ हम राइट मोड में sampleटीएक्सटी फाइल बनाते हैं
हम देख सकते हैं कि पाथ दिया गया है
हमारी फाइल डेस्कटॉप पर बनेगी
फिर हम फाइल में स्टेटमेंट्स लिखेंगे
वेलकम टो थे spoken ट्यूटोरियल और थिस इस एएन टेस्ट एक्जाम्पल एफपीआरइंटीएफ दिए गए आउटपुट स्ट्रीम में आउटपुट लिखता है
फ्क्लोज स्ट्रीम के साथ सहयोगी फाइल को बंद करता है
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
अपने कीबोर्ड पर Ctrl Alt और ट कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें
जीसीसी स्पेस फाइल डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस फाइल एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें डॉट स्लैशफाइल फाइल एंटर दबाएँ
हम देख सकते हैं कि फाइल निष्पादित हो गई है
अब हम इसकी जाँच करेंगे
होम फोल्डर खोलें
होम फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करें
अब डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करें
यहाँ हमारी sampleटीएक्सटी फाइल है
यह दर्शाता है कि हमारी फाइल सफलतापूर्वक बन गई है
अब खोलें
फाइल पर डबल क्लिक करें
यहाँ हम मैसेज देख सकते है
वेलकम टो थे स्पोकेन ट्यूटोरियल थिस इस एएन टेस्ट एक्जाम्पल इस तरह से हम फाइल बना सकते हैं और इसमे डेटा लिख सकते हैं
अब हम देखेंगे कि फाइल से डेटा कैसे पढ़ें
मैने प्रोग्राम पहले से ही लिख दिया है
मैं इसे खोलूँगा
इस प्रोग्राम में हम अपनी sampleटीएक्सटी फाइल से डेटा पढेंगे और कंसोल पर डेटा प्रिंट करेंगे
अब मैं कोड समझाता हूँ
यह हमारी हेडर फाइल है
यह हमारा मेन फंक्शन है
यहाँ फाइल वेरिएबल के लिए एक फाइल वेरिएबल और एक प्वॉइंटर परिभाषित किया है
फिर हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल सी घोषित किया
यहाँ हम फाइल sampleटीएक्सटी को रीड मोड में खोलते हैं
आउटपुट एफपी में संचित होता है
फिर हम कंडिशन को चेक करते हैं
यदि एफपी नुल के बराबर है
यदि कंडिशन ट्रू है तो हम मैसेज प्रिंट करते हैं
फाइल डोएसेंट एक्सिस्ट
अन्यथा यह दूसरी कंडिशन के लिए चेक करेगा
जबकि सी ईओएफ के बराबर नहीं है
यहाँ ईओएफ फाइल का अंत है
यह इनपुट का अंत बताता है
यह वह कंडिशन है जहाँ डेटा सोर्स से और अधिक डेटा नही पढ़ा जा सकता है
यदि कंडिशन ट्रू है तो यह sampleटीएक्सटी फाइल से कंसोल पर कैरेक्टर्स प्रदर्शित करेगा
यहाँ जीईटीसी विशिष्ट फाइल या स्ट्रीम से कैरेक्टर वापस करता है
अब यह हमारी sampleटीएक्सटी फाइल से कैरेक्टर वापस करेगा
पुच्चर कंसोल पर कैरेक्टर प्रदर्शित करने के लिए उपयोगित है
फिर यह कैरेक्टर्स को वेरिएबल सी में संचित करेगा
यहाँ हम फाइल को बंद करते हैं
और यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब सेव पर क्लिक करें
प्रोग्राम को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए टाइप करें
जीसीसी स्पेस रीडफाइल डॉट सी स्पेस हाइफेन ओ स्पेस रीड अब एंटर दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें read आउटपुट प्रदर्शित होता है
वेलकम टो थे spoken ट्यूटोरियल
थिस इस एएन टेस्ट एक्जाम्पल
इसी के साथ अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आ गए हैं
अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएँ
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
फाइल हैंडलिंग फाइल में डेटा लिखना उदाहरण एफपी fopensampleटीएक्सटी द्व फाइल से डेटा पढ़ना
उदाहरण एफपी fopensampleटीएक्सटी र नियत कार्य के रूप में टेस्ट फाइल बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
टेस्ट फाइल में अपना नाम और पता लिखें
फिर सी प्रोग्राम का उपयोग करके कंसोल पर प्रदर्शित करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें